वै का बगलम एक और बिल्डिंग छा जू ना जै पर ह-लाल रंग कु छपर छा फिर अगाड़ी बिटिन मैं एक पर गेट दिखेणु।

पिछाड़ी बटिन मूर्ति छन भगवान जी की शिव भवन की पार्वती माता की हनुमान जी की मूर्ति छन जो पूजा छन कनना।

कोई बच्चा पिछाड़ी बच्चा बात छन कना मैडम जी साइड पर खड़ी होईं अर कोणों पर एक खिड़कीन लगीं अर टेबल एंच बच्चा काम छन कना।